नमस्कार दोस्तों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
हम एक मौजूद डॉक्युमेंट को खोलेंगे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
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स 1004 और लिबरऑफस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं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
sevenreasonstoadoptfoss odt governmentsupportforfossinindia odt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
sevenreasonstoadoptfossodt को खोलें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
डॉक्युमेंट में दूसरे बिंदु को प्रविष्ट करें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
एंटर दबायेंगे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
पहले बिंदु को डिलीट करें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
टेक्स्ट फाइल डॉक्युमेंट governmentsupportforfossinindiaodt को ओपन करें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
इसे सेव किये बिना डॉक्युमेंट बंद करें